इस हॉस्पिटल का नाम संजीवनी हॉस्पिटल हैं और इस हॉस्पिटल के बाहर एक सड़क हैं।

इस का नाम इंडियन पोस्ट बैंक है।

और इस कैफे के सामने दो बाइक खड़ी है।